बाइकों पे कुछ खड़ी हुई है। किसी शोरूम टाइप का होता है। बस पैंट किया हुआ है। वाहपे मतलब चुनाई की हुई है ।

देख रहा है किसी को मगरमच्छ मगरमच्छ बोहत लंबा है। इसकी आखे बड़ी पेर बडे--

वो भी हेल्मेट लगाए हुए आपस मे बात कर रहे है उंगली दिखाके बोल रहे है बिल्डिंग काफी ऊची बन गयी है तीन मंजिल तक लोहे का खंबा स्टैंड खड़ा किया गया--

व्यक्ती है जो व्हाइट कलर के फूल को पकड़ा हुआ है। और देख रहा है। और खेत सा गया है। इसमे तरह तरह के--

पुरानी सी लग रही है। जीने गए हुए है। मट्टी के ही लग रहे है। एक अलग सा एरिया यहा का और एक पेड़ पौधे लग रहे है यहा पे।

पत्थर भी बाहर पड़े हुए है। अलग सा है यहां पे रोड भी काफी खालीसा है। कुछ पहाड़ ऊँचे से लग रहे है। ऊँचा नीचा ढलान है। सीढ़ियां--